क्या बोलते है स्कूल वगेरा का हो सकता है आंगनबाड़ी भी रहता है ना उधर भी एसे मैदान बने रहते है।

टायर पंचर दुकान जैसे कई क्या होता है की गाड़िया जैसे पंचर हो जाती है जैसे छोटी बाइक छोटी गाड़िया छोटे अअअ--

की दुकान गैरेज बने रहते है यहाँ गाड़िया जा के पंचर वनचर जो भी रहता है वो बनवा लेते है।

ये कोई न कंपनी का हो सकता है ये और क्या बोलते है यहाँ पे चेयर वगेरा भी रखा हुआ है यहाँ ना रिसेप्शन बैठती है जो --

ये न नया नया कुछ खुला होगा कुछ कम्पनी ये कुछ होगा कुछ किस चीज का है समझ नई आ रहा है की ना नया नया खुला होगा --

ये तो नया जिम का है नए जिम का निर्माण हुआ है या नया जिम कहीं खुला होगा तो ये उसका तस्वीर है ओपनिंग का दिन होगा तो फोटो --

सिंडिकेट कुछ लिखा हुआ है गोपालगंज का तस्वीर है गो उम्म इस ये न केंद्रा बैंक है जो कि न गो --

और लाइटे भी लगे हुए है सामने में पूजा उजा करने के लिए मंदिर जाते होंगे।

दे खाने लायक जगह की हम लीग वह जा सके रुक सके देख सके तथा को झाड़ भी उगाये है नारियल झाड़ भी --

अ आईसक्रीम भी बाजु में रखी है पीछे ठंडा भी है पीने के लिए --

पीछे में मोर पंख भी है कृष्णा बाँसुरी भी पकडे हुए है साथ में राधा भी उनके कंधे पे अपना सर रख के अपनी बा --

पूरा निकला हुआ है तना और पानी में वो है क्या बोलते है उसको कीचड़ --

बड़ी सी नदी दिख रही है मछली पकड़ने के लिए इस नदी में जाला भी डाला गया है किनारे में --

मछवारे भी दिखाई दे रहे है छोटे छोटे छोटे और अच्छा दिख रहा है नदी --